और आजु-बाजु शांत सा माहौल दिखाई दे रहा हैं।

बड़े बड़े पेड़ नज़र आ रहे हैं |

और यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ नज़र आ रहा है |

नल में से पानी निकल रहा है।

यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े छोटे मोटे वाहन भी दिख रहे हैं ।

और कुछ सामान नीचे भी रखा हुआ है फर्श पर।

और बड़े बड़े बिल्डिंग नज़र आ रही हैं ।

यहाँ पर एक रोड का व्यू दिख रहा है।

और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं जो की टेबल पे बैठे हुए हैं |